mysql के पांचवें भाग में आपका स्वागत है अपने डेटा को प्रयोगकर्ता के लिए एकोecho करने और इससे परिणाम दर्शाने के लिए हमें while स्टेटमेंटstatement के उपयोग की आवश्यकता होगी
जैसा कि मैंने उल्लेख किया है हमने एक रोrow वेरिएबलvariable बनाया है और यह =mysql_fetch_assoc है
यह हमारे extract क्वेरी से एक असोसीटिवassociativeअरैarray बना रहा है जोकि यहाँ है
अतः हम people टेबलतालिकामें सब कुछ चुन रहे हैं और उनको id के द्वारा आरोही क्रम में लगा रहा हूँ
अपने while के भीतर चूँकि हमने रोrow को एक अरैarray की तरह लिखा है और यह एक असोसीएटिव अरैarray है row0 ग़लत होगा क्योंकि यह संख्यावाचक हैं
यह संख्यावाचक आईडीnumeric idटैग्सtagsहैं इसके बजाय हम अपने fieldnames इस्तेमाल करेंगेऔर चूँकि यह असोसीएटिव है
अतः 0 1 2 3 4 के स्थान पर हम असली नाम उपयोग करेंगे
चलिए इससे वेरिएबल्सvariables बनाते हैं चलिए मैं id लिखता हूँ और फिर firstname equals हम हर जगह एक ही संरचना इस्तेमाल कर रहे हैं
अतः इसको कॉपी और पेस्ट करना काफी सरल होगा
चलिए इसको इंडेंट करते हैं
अतः हमारे पास एकसाथ पाँच हैं
तो यह पाँच हैं और चलिए इसको थोडा बदल देते हैं यह एक सुस्त काम है
किन्तु इस प्रकार करने से काफी जल्दी कर सकते हैं
अच्छा lastname और हमारे पास डेट ऑफ़ बर्थ है हमारे पास जेंडरgenderभी है
हमारे पास सारे डेटा हैं और अब हम कैसे इसका उपयोग करें
हमें एकोecho कमांड इस्तेमाल करने की आवश्यकता है
सम्भवतः अभी इस समय इसके बीच में एक लूप है अतः जो कुछ भी हम एकोechoकरते हैं वह फिर से दोहराएगा
हमारे पास प्रत्येक रिकार्डअभिलेख है और वह सही भी हैं हम इस कोड को दोहराएँगे
उदाहरणस्वरुप मैं यहाँ text लिखता हूँ अभी यहाँ पर 4 रिकार्डअभिलेख हैं
इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपको text 4 बार एकोechoहुआ दिखना चाहिए
4 बार टाइप करने पर यह कोड का अंश यहाँ प्रत्येक लूप दर्शा रहा है
अतः उदाहरण के लिए हम id या firstname या कुछ और सम्मिलित कर सकते हैं जो हमने अपनी असोसीएटिव अरैarray को प्रयोग करते हुए डेटाबेस से निकाला था
अब मैं लिखूँगा firstname lastname was born on dob जन्म तिथि के लिए and is और मैं जेंडरgender को यहाँ रखूँगा
अपने लाइन ब्रेक को न भूलकर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा
अतः हमारे पास डेटा का समूह है जो वेरिएबलvariableके नामों की सहायता से संरचित किए हैं
हमने सही क्रम में दिया है और हमारे पास जो रिकार्डअभिलेख हैं उन सबके लिए यह दोहराया भी गया है
अच्छा हमने अपने टेबलतालिकाके पूरे कन्टेन्ट को इस ऐस्टरिक के द्वारा घोषित स्टार का उपयोग करके दे दिया है जहाँ यह हर सिंगल डेटा या प्रत्येक रिकार्ड अभिलेखको जमा करता है
अब मैं यह करता हूँ मैं लिखूँगा if gender==f तब gender=female
इसकी सही वर्तनी और चलिए अब हम लिखते हैं else gender=male यह केवल वेल्यू पर निर्भर वेरिएबलvariableको पुनः लिखना है
यदि हम अभी रिफ्रेशrefresh करते हैंहम देख सकते हैं कि यह male male और female female में बदल गया है हमारे पास इस डेटा को दर्शाने के लिए कुछ रोचक तरीके भी हैं
इस समय मैं people टेबलतालिकासे चुन रहा हूँ और id के द्वारा आरोही क्रम में सजा रहा हूँ
मैं अवरोही id के द्वारा भी सजा सकता हूँ आप देख सकते हैं कि यह डेटा को इस प्रकार से बदल देता है
हम इसको firstname के अनुसार भी क्रम में लगा सकते हैं यह इसको अवरोही वर्णक्रमानुसार में रख देगा और असेंडिंगआरोही इसको आरोही वर्णक्रमानुसार रख देगा
अतः हमको a d e और k मिल गया
आप इसी तरह से सरनेम में भी कर सकते हैं
आप इसी तरह से किसी के साथ भी कर सकते हैं यहाँ तक कि जन्म तिथि के साथ भी जब तक आप यहाँ यह सम्मिलत कर रहे हैं
एक और चीज़ करने के लिए है अभी मुझे इसे फिर से id में वापस करना होगा और इसे अवरोही करना होगा हम यह लिमिटlimit1 इस्तेमाल कर सकते हैं या हम लिमिटlimit 2 3 या 4 लिख सकते हैं
अभी मैं इस उद्देश्य के लिए लिमिटlimit 1 करूँगा
अभी चलिए 1 लेते हैं जिससे कि पेज के उपयोगकर्ता को टेबलतालिकामें डाले गये आखिरी इंसान का पता चले
इसलिए मैं यहाँ एकोecho लिखूँगा
एकोecholast person to be inserted into table was करें और मैं इसे उसी तरह छोड़ दूँगा और फिर एक लाइन ब्रेक जोडूँगा
मैं अभी first और last name एकोechoकरूँगा ठीक है
अतः यहाँ हम देख सकते हैं कि काफी अस्तव्यस्तता है
last person to be inserted हाँवाकई में यह कार्य कर रहा है
यह पहले से ही limit कमांड में लिखा गया है
मैंने क्या किया है कि इसको id के अवरोही क्रम में 1 द्वारा लिमिट कर दिया है id वृद्धि सम्बन्धी है मुझे सबसे ऊपर 4 मिला है और यदि हम इसे 1 से लिमिटlimit करते हैं 4 ही केवल रिकार्डअभिलेखहोगा जोकि चुना गया है
इसलिए पिछले दर्शाए गये रिकार्डअभिलेखके अनुसार टेबलतालिका का अंतिम व्यक्ति अपनी वैल्यू एकोechoकरेगा
यह while केवल 1 डेटा मान देगा
चूँकि हम यहाँ 1 डेटा वैल्यू दे रहे हैं हम इससे भ्रमित हो गये हैं
यह यहाँ पर एक कमांड है select * from people order by id decs दूसरी है और limit 1 एक और है
हमने अल्पविराम या कुछ और का इस्तेमाल नहीं किया यह बस इतना है कि हम अपनी क्वेरी के भीतर अपने कोड कैसे लिखें
अच्छाकेवल इस कोड को जाँचने के लिए मैं अभी php myadmin में insert फंक्शनfunctionका उपयोग करके प्रविष्ट करूँगा और मैं एक और रिकार्डअभिलेखजोड़ दूँगी
उदाहरणस्वरुप चलिए david green लिखते हैं और हमारी जन्मतिथि कुछ भी हो सकती है
यह वास्तव में महत्व नहीं रखता कि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं हम male लिखते हैं
मैं यहाँ नीचे आती हूँ और यह डेटा जमा करती हूँ
browse पर क्लिक करें और हमारे पास यहाँ एक नई वैल्यू है
जब हम यहाँ पर वापस आते हैं और रिफ्रेशrefreshकरते हैं यह david green में बदल जाएगा
यह वास्तव में उपयोगी है यदि आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें आप विडियो या व्यक्तिगत फोटो रखते हैं
आप उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट अंतिम स्थान पर रख सकते हैं
या संभवतः अंतिम व्यक्ति जो आपकी वेबसाइट पर पंजीकृत हुआ है या कुछ भी
इसको इस्तेमाल करने की सम्भावना अनंत है
मूलतः कैसे डेटा को एकोechoकरें और कैसे उसे केवल mysql प्रश्न को इस्तेमाल करते हुए कुशलतापूर्वक प्रयोग करें
अगले भाग मेंहम अपने उपयोगकर्ता को अनुमति देंगे कि जिस डेटा को वह दर्शाना चाह रहें है उसे वह स्पष्ट रूप से बता सकें
हम कुछ एचटीएमएलhtml प्रपत्र बनाएँगे और उनको यह करने के योग्य बनाएँगे
यह उन्हें डेटाबेस या टेबलतालिकासे उनके खुद के पसंद का एक नाम चुनने देगा
अतः मुझसे अगले भाग में मिलिए
मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद